गेट के दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गेट के बाहर एक बगीचा बना हुआ है।

इसमे हमे एक पानी का तालाब दिख रहा है जिसमे नीले कलर का पानी दिख रहा है बगीचे के--

इसमे हमे एक रोड दिखाई जा रही है रोड के बाई तरफ काफी सारे लोग और बाइसाइकिल खड़ी हुई है।

तालाब के बीच मे कुछ नीले पीले हरे और लाल कलर के गोलाकार बने हुए हैं।

छत पर तीन लाइट लगे हुए हैं जो कि जल रहे हैं सामने की तरफ भी पुस्तके दिख रही हैं।